आ एक मुसलमानां की मस्जिद सी लग रही है बिक माईन पंखो लाग रयो है एल. सी. डी. लाग री है।